प्लास्टिक की बाल्टी हैं कप हैं मग्गे और गमले हैं कट्टा है।

और केवल एक छोटे से कंटेनर के अंदर जा रहा है।